jmol application में modify display और view के स्पोकन tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे:
screen पर model को rotate zoom move और spin करना
view को संशोधित करना
display का स्टाइल बदलना
परमाणुओं और bonds का color और size बदलना
इमेज को axes और bound box के साथ दर्शाना
image को अनेक file formats में सेव करना
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको निम्न के साथ परिचित होना चाहिए
jmol application window और
modelkit function प्रयोग करके models को बनाना और edit करना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
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu os version 1204
jmol version 1222 और
java version 7
मैंने panel पर 2chloro1propanol के model के साथ एक नयी jmol window खोली है
structure के बेहतर दृश्य के लिए हम model को rotate और zoom कर सकते हैं
model को rotate करने के लिए टूलबार पर rotate molecule icon पर click करें
model पर click करें और देखें कि cursor hand icon में बदलता है
mouse button को पकड़ें panel पर mouse को खींचें
आप देख सकते हैं कि model रोटेट हो रहा है
zoomइन और zoomout के लिए panel पर cursor रखें
zoomout के लिए mouse wheel को ऊपर और zoomइन के लिए नीचे move करें
panel पर model को move करने के लिए cursor को model पर रखें
keyboard पर shift button को पकड़ें
doubleclick करें और mouse खीचें
विस्तृत विवरण के लिए popअप menu में उपलब्ध mouse manual को देखें
popअप menu खोलें और नीचे about तक जाएँ फिर jmol 1222 select करें और mouse manual पर click करें
यदि आप internet से जुड़े हुए है
mouse manual के साथ एक web पेज screen पर दिखाई देता है
popअप menu से exit के लिए panel पर click करें
panel पर अणु को स्वचालित pop से spin करने के लिए popअप menu खोलें
नीचे spin तक जाएँ और फिर on विकल्प पर click करें
हम देख सकते हैं कि panel पर model स्पिन हो रहा है
spin को बंद करने के लिए popअप menu फिर से खोलें
नीचे spin तक जाएँ और off पर click करें
एक नियत कार्य में
2chloro3iodopentane का model बनायें
popअप menu में spin विकल्प जाँचें
spin की दिशा z axis और rate of spin 40 से बदलें
संकेत: popअप menu में set z rate विकल्प प्रयोग करें
आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए
अब हम view menu के बारे में सीखते हैं
menu bar पर view menu model को विभिन्न angles से देखने के विकल्प रखता है
view menu पर click करें
menu में देखें और उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से चुनें
उदाहरण के लिए मैं top view चुनुँगी
top विकल्प पर click करें
screen पर image प्रदर्शित करती है कि top से अणु कैसा दिखता है
हम इस we को image की तरह विभिन्न file formats में सेव कर सकते हैं
save current view as an image icon पर click करें
save dialog box दिखता है
file format select करने के लिए image type के विकल्पों में देखें
मैं jpeg format select करूँगी
उस folder को खोलें जिसमें आप file सेव करना चाहते हैं
मैं इसे desktop पर चाहती हूँ
desktop select करें और open button पर click करें
file name text box में type करें 2chloro1propanol
files of type पर जाएँ और jpg select करें
save button पर click करें
अब image desktop पर jpeg format में सेव होगी
आणविक model के प्रदर्शन के स्टाइल को विभिन्न तरीकों से रूपांतरित किया जा सकता है
यदि आवश्यक हो तो इस अणु में परमाणुओं और bonds के color और size को बदला जा सकता है
हमारे पास अणु या select set में सारे परमाणुओं को रूपांतरित करने का विकल्प है
panel पर model का default display ball and stick का है
display को cpk space fill में बदलने के लिए popअप menu खोलें
select पर जाएँ और पूरे अणु को संशोधित करने के लिए all पर click करें
popअप menu दोबारा खोलें
नीचे style तक जाएँ submenu से scheme select करें
और cpk spacefill विकल्प पर click करें
screen पर model cpk spacefill में बदल गया है
अब हम इसे वापस ball and stick model में बदलते हैं
अब पहले की तरह ही समान steps का अनुसरण करते हैं
popअप menu खोलें
नीचे style तक जाएँ scheme select करें और ball and stick विकल्प पर click करें
अब model ball and stick स्टाइल display में ball गया है
menu bar पर popअप menu और display menu का प्रयोग करके भी bonds के size को बदला जा सकता है
display menu पर click करें और bond select करें
submenu angstrom units में अलगअलग size diameter के bonds के विकल्प रखता है
उदाहरण के लिए मैं 01 angstrom select करूँगी और इस पर click करें
bonds की मोटाई में बदलाव पर ध्यान दें
हम परमाणुओं और bonds का रंग भी बदल सकते हैं
मैं model में सारे carbon परमाणुओं का रंग पीले से बदलना चाहती हूँ
ऐसा करने के लिए popअप menu खोलें और select पर जाएँ
नीचे element पर जाएँ और carbon पर click करें
popअप menu दोबारा खोलें और color select करें
फिर atoms select करें और yellow विकल्प पर click करें
model में सारे carbons all पीले रंग में दिखाई देते हैं
अब देखते हैं कि bonds का रंग कैसे बदलते हैं
popअप menu खोले और all select करें
popअप menu दोबारा खोलें
नीचे color पर जाएँ submenu से bonds select करें
नीचे जाएँ और blue विकल्प पर click करें
सारे bonds all नीले रंग में हैं
हम इमेज को x y और z axes और bounding box के अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं
popअप menu खोलें style select करें
और axes विकल्प तक जाएँ
submenu से pixel width select करें
मैं pixel विड्थ में 3 px चुनूँगी
अब हमारे पास सारी axes के साथ screen पर model है
image के चारों तरफ bound box बनाने के लिए popअप menu खोलें
style तक जाएँ और विकल्पों से boundbox select करें
pixel width select करें और pixel विड्थ 3 px पर click करें
screen पर हमारे पास axes के साथ boundbox में 2chloro1propanol का model है
boundbox को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमें zoomइन या zoomout करना पड़ सकता है
image सेव करें और program exit करें
अब सारांशित करते हैं कि हमने क्या सीखा
इस tutorial में हमने निम्न सीखा
screen पर model को rotate zoom move और spin करना
model को विभिन्न angles से देखना
display का स्टाइल बदलना
परमाणुओं और bonds का रंग बदलना
हमने निम्न भी सीखा
image को axes axes और बाउंड बॉक्स के साथ प्रदर्शित करना और
image को भिन्न file formats में सेव करना
नियत कार्य में
3amino1propanol का model बनायें
display को sticks में बदलें
model में सारे hydrogens का रंग हरे में बदलें
सारे bonds का रंग पीले में बदलें
आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए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
अधिक जानकारी के कृपया contact @spokentutorial org को लिखें